मैदान है मैदान में आधे में सीमेंट के टाइल्स लगे हुए हैं ।

गार्डन है गार्डन मे हरी घास लागि हुई है छोटे पेड़ लगे हुए है लोहे की रोड है रोड के ऊपर यक चक्र है।

दो रोड हैं टाइल्स लगे हुए हैं | मैदान दिखाई दे रहा है | ऊपर खम्भा लगा हुआ है |

साइकिल भी दिखाई और कुछ लाइटिंग भी दिखाई दे रही है कुछ पीली इंस्ट्रूमेंट भी दिखाई दे रहैं --